यहाँ एक जिम है। एक लड़का खड़ा हुआ हैजो कि डम्बल उठा रहा है।

ये एक लड़का है और सिटी कैफै के पास यह खड़ा हुआ है।

यहाँ पर बच्चे हैं जो कि पेंटिंग पेंटिंग बना रहा है बना रहे हैं।